c और c ++ में increment और decrement operators पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्नलिखित के बारे में सीखेंगे:
increment और decrement operators
++ जैसे a ++ जो postfix increment postfix increment operator है
++ a जो prefix increment prefix increment operator है
जैसे a एक postfix decrement postfix decrement operator है
a एक prefix decrement prefix decrement operator है
हम type casting टाइपकॉस्टिंग के बारे में भी सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँoperating system के रूप में ubuntu 1110
ubuntu में gcc और g ++ compiler version 461
++ operator operand की मौजूदा value में एक की वृद्धि करता है
a ++ और ++ a a = a + 1 के समतुल्य हैं
operator operand के मौजूदा value में एक की कमी करता है
a और a a = a1 के समतुल्य हैं
मैं एक c program की सहायता से increment और decrement operators के उपयोग को समझाऊँगा
मैंने पहले ही program बना लिया है इसलिए मैं code समझाऊँगा
यहाँ हमारे पास c में increment और decrement operators के लिए code है
यहाँ मैंने एक integer variable a लिया है जिसकी value 1 है
इस तरह हम a की value में परिवर्तनों का अवलोकन करने में सक्षम होंगे
इस प्रकार इससे हम operators की कार्यविधि के बारे में बेहतर जानेंगे
देखते हैं कि postfix increment operator कैसे कार्य करता है
इस printf statement का output 1 है
यह value नहीं बदलेगी
यह इसलिए होता है क्योंकि postfix operation operand के मूल्यांकन के बाद कार्यान्वित होता है
यदि a ++ पर कोई operation कार्यान्वित होता है तो यह a की मौजूदा value पर किया जाता है
उसके बाद a की value में वृद्धि की जाती है
अब यदि हम यहाँ a की value देखते हैं तो इसमें 1 की वृद्धि हुई है
हम पुनः परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए a को 1 मान लेते हैं
अब हम prefix increment operators पर we हैं
यह printf statement screen पर 2 printf करता है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि prefix operation operand के मूल्यांकन से पूर्व कार्यान्वित होता है
अतः पहले a की value में 1 की वृद्धि होती है और फिर इसे printed किया जाता है
हम पुनः यह देखने के लिए a की value को print करते हैं कि इसके अलावा कोई और परिवर्तन नहीं हुआ है न
अब इस code को एक्जीक्यूट करके जाँच करते हैं
मैं निम्नलिखित lines पर comment दूंगा type करें/* */
save पर click करें
मैंने अपनी file incrdecr c नाम से सेव की है
अपने कीबोर्ड पर ctrl alt और t कीज़ एक साथ दबाकर terminal window खोलें
कंपाइल करने के लिए terminal पर निम्नलिखित type करें gcc space incrdecr dot c space minus o space incr enter दबाएँ
code को एक्जीक्यूट करने के लिए/incr type करें enter दबाएँ
output screen पर प्रदर्शित होता है
यह output है जब आप a ++ print करते हैं
यह output है जब आप ++ a print करते हैं
हम देख सकते हैं कि परिणाम पूर्व में चर्चा किए गए के समान है
अब शेष program पर वापस आएँ
मैं अब postfix और prefix decrement operators के बारे में बताऊंगा
यहाँ और यहाँ से मल्टिलाइन comments हटाएं
अब हम पुनः a को 1 value देते हैं
यह printf statement outputs में 1 value देता है जैसा कि पहले वर्णन किया गया है
a की value में a के मूल्यांकन के बाद 1 की कमी होगी चूँकि यह एक postfix expression postfix expression है
अगला statement a की value 0 prints करता है
a की value अब 1 से घट गयी है
हमारे पास अब prefix decrement operator है
इस printf statement का output 0 होगा
चूँकि यह एक prefix operation है
prefix operation operand के मूल्यांकन के बाद कार्यान्वित होता है
इस printf statements का output 0 है
a की value में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है
return 0 type करें; और ending curly bracket बंद करें
save पर click करें
terminal पर वापस आएं
कंपाइल करने के लिए terminal पर निम्नलिखित type करें; gcc space incrdecr dot c space minus o space incr enter दबाएँ
एक्जीक्यूट करने के लिए type करें/incr enter दबाएँ
यह output है जब आप a print करते हैं
यह output है जब आप a print करते हैं
अतः अब हम देखते हैं कि increment और decrement operator कैसे कार्य करते हैं
यदि हम c ++ में वही program लिखना चाहते हैं
मैं उपर्युक्त c code में कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ
editor पर वापस जाएँ
यहाँ आवश्यक code युक्त c ++ file है
ध्यान दें कि यह header c file के header से भिन्न है
हमारे पास using namespace statement भी है
इसके अलावा ध्यान दें कि c ++ में output statement cout है
अतः इन भिन्नताओं के अलावा दोनों codes काफी समान हैं
file को सेव करें file cpp extension के साथ सेव होती है
code को कंपाइल करें
terminal खोलें और type करें g ++ space incrdecr dot cpp space minus o space incr enter दबाएँ
एक्जीक्यूट करने के लिए type करें/incr enter दबाएँ
output screen पर प्रदर्शित होता है
अतः हम पाते हैं कि output c program के समान है
हम अब typecasting की अवधारणा को समझते हैं
यह c और c ++ दोनों में समान तरीके से लागू होता है
typecasting का उपयोग एक प्रकार के variable को दूसरे प्रकार के variable की तरह कार्य करने योग्य बनाने के लिए किया जाता है
typecasting आपके इच्छित data type को कोष्ठक में बंद करके किया data है
cast को उस variable के सामने रखा जाता है जिसे आप cast करना चाहते हैं
यह typecast केवल एक एकलoperation के लिए वैध होता है
अब a एकल operation के लिए एक float variable की तरह कार्य करेगा
यहाँ एक उदाहरण है जो मैंने पहले ही बना लिया है
मैं अब code समझाऊंगा
हम पहले इंटीजर के रूप में variables a और b और float के रूप में c घोषित करेंगे
a को 5 value दी है b को 2 value दी है
हम a और b पर operations का संचालन करेंगे
हम a को b से विभाजित करते हैं विभाजन का परिणाम c में संग्रहीत किया जाता है
हमने दशमलव के दो स्थानों तक परिशुद्धता को प्रदर्शित करने के लिए% 2f का उपयोग किया है
प्रदर्शित किया गया परिणाम अपेक्षित परिणाम 250 के बजाय 200 होगा
भिन्नात्मक भाग को हटा दिया जाता है क्योंकि दोनों ही ऑपरेंड a और b इंटीजर हैं
real division क्रियान्वित के लिए एक ऑपरेंड में float के लिए type cast होगा
यहाँ हम a को float में typecast कर रहे हैं c में अब real division की value संग्रहीत है
अब real division का परिणाम प्रदर्शित होता है उत्तर 250 है जो अपेक्षित है
return 0; type करें और ending curly bracket बंद करें
save पर click करें file को c extension के साथ सेव करें
मैंने अपनी file typecast c नाम से सेव की है
terminal खोलें
कंपाइल करने के लिए type करें gcc space typecast dot c space minus o space type enter दबाएँ
एक्जीक्यूट करने के लिए type करें/type enter दबाएँ
output screen पर प्रदर्शित होता है
दोनों values को देखते हुए हम typecasting के प्रभावों को समझते हैं
अब हम tutorial को सारांशित करेंगे
इस tutorial में हमने सीखा कि
increment और decrement operators का उपयोग कैसे करें
हमने postfix और prefix प्रारूपों के बारे में भी सीखा
इसके अलावा हमने typecasting और इसके उपयोग के तरीकों के बारे में भी सीखा
एक नियतकार्य के रूप में :
निम्नलिखित expression को हल करने के लिए एक program लिखें a divided by b plus c divided by d
a b c और d की values input के रूप में उपयोगकर्ता से प्राप्त की है
real division क्रियान्वित के लिए typecasting का उपयोग करें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
यदि आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके भी देख सकते हैं
spoken tutorial project team
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है
उन्हें प्रमाणपत्र भी दिया जाता है जो online test pass करते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद